पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

दीवार खड़ी दिखाई दे रही हैं पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं ट्रेडमिल मशीन दिखाई दे रही है।

भी वाइट और ब्राउन कलर पूता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं रेड येलो पर्पल क्रीम कलर के व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं पेन दिखाई दे रहे हैं।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

कैमरा दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं पत्थर दिखाई दे रहा है।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

एक रूम दिखाई दे रहा है जिसके दीवारों पे पिस्ता कलर पोता हुआ दिखाई दे रहा है अलमीरा दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की।

यहाँ पे एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारों पे सफ़ेद कलर पूता हुआ दिखाई दे रहा है उसके छत पे भी सफ़ेद कलर पूता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे रेड कलर पोता हुआ है।

यहाँ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पे वाइट कलर पोता हुआ है।

यहाँ पे एक बस दिखाई दे रही है रेड कलर की जिसपे ब्लू कलर की पुता हुआ है उसपे नंबर प्लेट भी दिखाई दे रही है।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

पे एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुईं है उसने कमरबंध पहना हुआ है।

रेड कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।